यहां पे बहुत सारा आदमी भी खाना खा रहे हैं।

यहां पे नीचे फर्श पर टाइल्स लगा हुआ है।

मेज पर बहुत सारा बुक दिखाई दे रही है और यहां पेन भी रखा हुआ है।

यह एक मस्जिद है इस मस्जिद बहोत लंबा है मस्जिद के अगल बगल पेड़ पौधे हैं।

पंखा भी लगा हुआ है यहां फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है।

खंभे भी दिखाई दे रही है सामने मकान दिखाई दे रहा है।

यहां पे तरह तरह की लाइटें लगाई हुई हैं यहां पे पंखा भी लगाया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस मैदान में बहुत हरा भरा है सामने पेड़ भी देख रहा है।

इसमें बहोत सारा अलमारियां भी है अलमारी में सीसा लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है नदी के अगल बगल बहुत सारा पहाड़ियां है।

पेड़ पौधा हरियाली दिखाई दे रही है।

एक झंडा दिख रहा है कुछ लोग का झंडा फहरा रहे हैं।

यह एक रूम है इस रूम में बहुत सारा पर्दे लगाई गई है।

लोहे की कुछ सामान दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पे बगल मे डिब्बा भी रखा हुआ है।

पाईप के रेलिंग लगा हुआ है और कालीन भी बिछाया गया हैं।

यह एक कोचिंग सेंटर है इस कोचिंग सेंटर में दिखाई दे रही है।

यह एक बहोत बड़ा नदी है इस नदी में पानी बहोत काफी है।